यह एक जगह है। यह जगह में एक पिलर पर पहिए का निशान बनाया गया है जो गोल आकार पर बनाया गया है और इसके अंदर जाने से पहले दो शेर दोनों तरफ बनाए गए हैं।